-- हां यहां पे यहां पे एक खेत दिख रहा है मुझे और बहुत सारी हरियाली-हरियाली दिख रही है जो घास है उसमे ग्रीन और व्हाइट रंग की घास है।

पीला सफ़ेद इस तरह के कुछ आस-पास दिख रहा है और ब्लैक कलर की छांव भी है।

एक फाउ एक फाउंटेन है यहाँ पर और इसमे ये स्टार की शेप मै बना हुआ है एक बड़ा फाउंटेन है और चार आठ छोटे फाउंटेन भी है बड़ी येलो लाइट की गयी है इसमें--

यहाँ पे कुछ फाउंटेन दिख रहे हैं मुझे आ चार फाउंटेन है जो ग्रीन कलर की टाइल्स से कवर किये गए हैं और व्हाइट लाइट लगी हुई है। उसमे साइड से एक वाल है जिसमे एक पिलर भी है येलो कलर का।

अ पेड़ों का कलर घरा से अ-बा-इ-आ ब्लैक कलर अ ब्लैक एंड वाइट किया गया है और एक आदमी दिख रहा है एक स्कूल --

एक ग्रीन कलर का पेड़ दिख रहा है। एक हिघ्मोस्ट किरी एक बड़ी इला यहाँ पाइप दिख रहा है मुझे लाइट के लिए। सामने एक कार है रेड कलर की है और नीचे जो फ्लोरिंग है वो ब्लैक कलर की टाइल्स लगी हुई है यहाँ पे।

ये किसी ऑफिस की बिल्डिंग लग रही है और बड़ा-सा ब्लैक कलर का गेट लगाया हुआ है इसकी जो दीवाले है वो क्रीम और रेड कलर की है।

ऊपर तीन बा-आ लाइट के तार जा रहे है एक बड़ा आसमान दिख रहा है जिसमे ब्लैक - ब्लैक सा व्हाइट - व्हाइट सा आसमान दिख रहा है।

कार्डियो जिम कर रहा है एक डंबल भी रखा हुआ है और ब्लैक फ्लोरिंग मेट है इसके ऊपर --